यह एक दिवाली की तस्वीर है यहां पर एक अनार भी है।

और यहां पर कई सारी महिला भी खड़ी हैं।

इस पेंट की दुकान में कइ प्रकार के कलर के डिब्बे भी रखे हैं।

इस दुकान के अंदर कई प्रकार के साबुन भी रखे हैं।

यहां पर ग्रील के पास एक कुर्सी भी रखी है।

यह एक होटल के आर पलाजा है।

इसने रेड कलर की या गुलाबी कलर की टी शर्ट भी पहन रखी हैं।

उसे बेड पर एक सफेद रंग की चादर और नीले रंग की चादर है।

मेज पर छात्र प्रोजेक्ट कर रहे हैं।